पीछे के साइड एक कार जैसा कुछ दिखाई दे रहा है जिसका दरवाजा गीत दिखाई दे रहा है नीचे कुछ गमले रखे दिख रहे पौधे लगे दिख रहे गाड़ी दिखाइए--

जिसके साईड मे कुछ गार्डन बना है जिसके अंदर कुछ छोटे छोटे पोधे लगे है कुछ सीट बनाई हुई है बैठने के लिए कुछ एक सामने डब्बा दिखाई देहरा है एक पिलर के उपार लकड़ी के कुल्लड़ मे पानी भरके रखा दिखाई दे रहा है और--